फर्श क्रीम कलर का है वहां पर एक अंकल बैठे है उन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी है सामने की तरफ एक लैपटॉप दिख रहा है ब्लू और ब्लैक रंग का--

उसमें बहुत सारी साड़ियां दिख रही है।